और जाली लगी है मिट्ठू दिखाई दे रहे है।

एक मोर दिखाई दे रही है जोकी निली है।

एक हरे कलर के रस्सी से बंधी है एक टोकरी दिखाई दे रही है जिसमे चारा लटका हुआ है रखा हुआ है जमीन है।

यह कुछ भीड़ दिखाई दे रही है और एक पालकी दिखाई दे रही है जिसमे बाबाजी बैठे हुए है।